ये कार टूर टूर एंड ट्रैवल्स के लिए है श्री श्याम टूर एंड ट्रैवल्स --

इसमें पीछे सरिये दिखाए गए हैं ये सामने अच्छा अच्छा टायर्स दिखाए गए --

यह पिक्चर एक हाई चाय और रेस्टोरेंट की दिखाई गई है जो चाय बेचते हैं।

एक प्लेट है और एक यह टेबल पे रखा हुआ है यह आलू पराठा है इसमें मिर्च--

फुटबॉल के ग्राउंड में बच्चे बॉल खेल रहे हैं और ब्लैक है इसमें--

जिसमें तीन लोग शामिल है इसमें एक लड़का बूढ़ी आंटी और एक बुजुर्ग।

हमको दिखाई दे रहया बाहार से दृश्य--

पीछे रेलिंग बन अ लगी है एक जगह दिखाई दी है --

और इसमम मिट्टी वरक है और उसके पीछ इसमे एक पत्थर का घा के पीछे दो तीन घर पे पर्दे लगे हु--

इस पिक्चर में काया क्लिनिक को दिखाया गया है ओ और उसके बाहर में गेट हैं और एक--

और साथ में लोग बैठे हुए हैं प्रि इलेक्ट्रिक पिलर्स हैं बैठने की ज चेअर रेलिंगस बनी--

इस पिक्चर में दिखाया गया है इस पिक्चर में एक बस खड़ी है जिसमें इंजन और सभी लिखा हुआ है।

हॉस्पिटल है और इसमें फ्रंट में रिसेप्शन है रिसेप्शन पे दो बुक्स रखी है और दो मिठाई के बॉक्सेस में एक --

का नाम है अनमोल दही घी पनीर रस गुल्ले गुलाब जामुन एंड एन_एस वैशाली।

का यह जगह दिखाई गई है देव महाराज